ऑरेंज कलर का साड़ी वेयर --

सामने रोड दिख रही है और ऊंटो जहाँ रहे हैं यहाँ।

और यहाँ पे सामने भैया माइक में --

टी शर्ट पहने दो लड़के और दो तीन लड़के खड़े हुए हैं और --

सामने एक बस खड़ी हुई हैं।

फ्लैग में होता है। अलग-अलग ड्रेस --